और उसके साथ साथ हमें हरे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें हमें बहुत सारे अंडे दिखाई दे रहे हैं।

ते हुए दिखाई दे रहे हैं।